और ट्रैन की सहायता से हम कहीं भी आ जा सकते हैं हम कहीं भी विदेश में पढ़ने जा सकते हैं विदेश से वापस आ सकते हैं और अपने रिस्तेदारो के यहाँ भी इसी ट्रैन माध्यम से जा सकते हैं।

किसानों का मैदान है यहां पे किसान खेती करते हैंअनाज उगाते हैं और लोगो को बेचते हैं और जिनसे उन्हें उनकी आय प्राप्त होती है और उससे वो अपनी मूलभूत आवश्यकतों की पूर्ति करते हैं|

यह बनारस का दृश्य है बनारस में अस्सी घाटे है अस्सी घाटों में मशहूर सभी घाटे है। ये चेत सिंह घाट बहोत अत्यंत आकर्षक और सुन्दर स्थान है यहाँ पे लोग आते है फ़ोटोज़ खींचवाते है। ये बहोत ही मन को शांति देने वाला घाट हैं।